जमीन की खुदाई होती हुई दिख रही है।

और दो भेसें भी जाती हुई दिख रही हैं पास में एक औरत भी चलती हुई नजर आ रही है।

और उसका नाम शिवम आइसक्रीम सेंटर है।

गाड़ी के चारों तरफ आइसक्रीम के पोस्टर चिपके हुए हैं।

ये एक जिम हैजहां पर एक आदमी एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहा है।

और ये एक ब्लैक कलर की एक्सरसाइज की मशीन है।

इस पिक्चर में बहार से एक कायल नाम का रेलवे स्टेशन दिखाइ दे रहा है।

जिसके बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं।

इन पार्किंग जोन का बोर्ड भी लगा हुआ है।